अंदर जाने का गेट चैनल गेट है यहां पे दो है और आसमान नीला है।

यहां पे स्विमिंग पूल है जो यहां पानी है नीले कलर का और यहां पे साइड में यह--

पुल है जो फूलों से डेकोरेट किया गया है और यहां पे पानी में भी है।

टेबल है रेड कलर का ऊपर का पिंच है नीचे का ला--

और यहां पे है बिल्डिंग है आसमान नीला है यहां पे एक पेड़ है जो ग्रीन कलर का है और यहां पे--

यहां पे फूलों के झाड़ है एक औरत है और एक छोटी सी बच्ची भी है आसमान न--

यहां पे है एक शादी खाना जो यहां पे टेबल और कुर्सियां रखे हुए हैं कुर्सियां व्हाइट कलर के कपड़ा है टेबल पे भी--

फ्लाइट की है और यहां पे जाने के लिए रास्ता भी है आने के लिए भी हैं।

ठंडा पानी गरम पानी का भी ये भी है यहां पे चेयर रखा गया है और यहां पे वॉशिंग मशीन है।